बहुत सारे आदमी भी हैं।

सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

और एक लैपटॉप भी है।

और दो खंबे भी है।

और बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

ऊपर की साइड बहुत सारी खिड़की भी है।

और नीचे बाइक भी खड़ी हुई है।

और एक बल्फ भी है।

और एक पंखा भी है।

और बहुत सारे लाइटें लगी हुई है।

और एक खंभा भी वो है।

यह एक तेल पंपा है।

और एक बाइक की भी है और बहोत सारे गुब्बुरे भी है।

और एक मीटर भी है।

और दो तीन देवी हैं।